जहां पर बहोत सारे बेलें लगी हुई है जो हमें सब्जियां देती हैं।

वो सिमट से घर को बना रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हैं।